और पर्पल कलर की दीवार है सीलिंग है वाइट कलर की सीलिंग के ऊपर पंखा है।

जो कि किसी चीज का दर्शन कर रहे हैं एक भटिले कलर का पै शर्ट पहना हुआ व्यक्ति खड़ा है और एक पीले कलर की साड़ी पहने हुए एक लेडिस खड़ी है।

नालंदा हाई सेकेंडरी स्कूल है है न।

ये बहोत बड़ा है मैदान पर बच्चे खड़े हुए हैं ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइट कलर का पेंट कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं।

रोड पर चल रहे हुए व्यक्ति भी खड़े हैं।

काफी सारे रंग बिरंगे बॉक्स रखे हुए हैं एक शटर भी लगा हुआ है लोहे का और व्हाइट कलर की पेंट मतलब पोताई भी है।

और स्टील की ग्रिल लगी है नीला आसमान है।

कुछ दवाइयां रखी हुई हैं और रेड कलर के कुछ रस्सी पर बंधे हुए लटके हुए हैं टेबल है एक दरवाजा है नीले कलर का।

और पर्दा लगा हुआ है और पीले कलर की पेंटिंग है एक घड़ी है और मार्बल टाइल्स है।

जहां पर एक व्यक्ति रस्सी का झूला डालकर लटका हुआ है शायद वो--

हमारे सामने एक बिल्डिंग दिख रही है।

बलूंस लगे हैं रेड कलर का बलून है वाइट कलर का है ब्लू कलर का है पर्दे भी लगे हुए हैं।

स्टेशन पर बैठने के लिए चेयर है।

और कुछ पटरिया भी दिख रही है एक छोटा सा प्लेटफार्म भी दिख रहा है नीला आसमान है।

टीन छाए हुए हैं टीना छाया हुआ है।

और वहां पर छोटे छोटे प्लांट्स भी लगे हैं।